और अपनी बॉडी टेक्सचर को बदलते हैं।

और बहोत ही बड़ा जिम है।

यह एक आकार में कटी हुई डिजाइन है जो की पीले कलर की है।

जहां पर डिजाइन के लिए ऊपर हरी पत्तियां लगी है।

और यहां से बादलों का दृश्य बहोत ही अच्छा दिखता है।

और यहां पर गार्ड भी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हैं।

और यह बल्बों से बहुत अच्छा सजा हुआ है।

और बहोत ही आरामदायक कुर्सियां भी हैं।

और एक तरफ एक पतला पेड़ है जो की थोड़ा छोटा है।

माइक भी लगे हैं। मैट भी बिछे हैं।

और ये शीशे भी इसके काले हैं।

यह बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है।

यहां पर सब सामान उचित दाम पर मिलता है।

और आस पास टेंट लगा है यह काफी सुंदर माहौल है।

जोकि बहोत ही सुंदर है।

बहोत बड़ी सी बाउंड्री भी बनी है।

और यहां इसके अगल बगल बहोत से पत्थर ओत्थर है।

और यहां पर स्टाम्प्स भी मिलते हैं।

और उसके बगल में अशोक का पेड़ लगा है।

कुछ कोंस भी रखें हैं जो कि लाल कलर के हैं।

और बगल में बाउंड्री भी बनी है ऑरेंज कलर की।

यहां पर लाल कुर्सियां है जोकि बहोत ही आरामदायक है।

यहां पर शिवाय ओम नमः शिवाय लिखा है।

नीले कलर के बोर्ड में समरा हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

यह बहुत ही बारीकी डिजाइन से बनाया गया हुआ मंदिर है।

और कुछ स्टूल हैं जोकि ऑरेंज और ब्लैक कलर के हैं।